उसके नीचे एक छोटी सी शॉप दिख रही है।

कुछ लोग इन पंछियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं।

और यहां पर एक छत है जो नीले कलर की है।

मजदूरों ने फिरोजी कलर का मास्क भी लगाया हुआ है।

उसकी लाल लाल चार खिड़कियाँ भी दिख रही हैं।

और वो कार की डिग्गी खोले खड़ा है उसमें एयर दे रहा है।

और यहाँ पर आसपास हमें कुछ कारे भी दिख रही हैं।

उसके ऊपर लिखा है माउंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

सामने बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ चेयर लगी हुई हैं टेबील के ऊपर।

जिसके अंदर सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक रेड एंड ब्लैक दीवार भी दिख रही है।

पुल के ऊपर कुछ गेंदें भी पड़ी हुई हैं।

उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

इसके एक में नारा है बड़ा सारा।

इस चित्र के अंदर हमें एक ठेला दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर एक गुड़िया दिख रही है।

इस चित्र के अंदर हमें बहुत सारे हरे भरे बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है।

दीवार के ऊपर ब्लू कलर की पट्टी भी लगी हुई है।

उसके हाथ में एक साइड घड़ी पहना हुआ है।

नीचे कच्ची जमीन है आस पास कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है।

उस पे कुछ बर्नी भी रख रखी हैं।

और एक क्यू_आर कोड भी रख रखा है इस व्यक्ति ने।

यहाँ पर गद्धे बिछा हुआ है वाइट कलर का--

शॉप के अंदर बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं।

कुछ व्यक्ति शॉप के बाहर ही खड़े हुए हैं।

यहाँ पर दो एक्टिवा भी खड़ी हुई हैं।

यहाँ पर एक दो व्यक्ति और दिख रहे हैं।

सामने एक वाइट कलर की इमारत है।

नीचे पूरा कच्चा ही कच्चा दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक काली सी दीवार दिख रही है।

और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो अदर्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है।